सैकल वा को देखत हे ओदे और लाईट दिखत है चारो तरफ माहोल है ओदे पंखा और लगे हे यहा बड़का सा ।

यहाँ जिम - सिम एदे साइकल वा दिखत हे अऊ एदे चढ़ के जिम अगेरावा करथे चलथे ओदे साइकल वा के ओदे दिखत हे।